वहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारों का कलर ऑरेंज ग्रीन ग्रे दिखाई दे रहा है।

कई घर दिखाई दे रहे हैं जिनकी दीवारों का कलर व्हाइट ग्रे ग्रीन दिखाई दे रहा है। आसमान का कलर पर्पल ब्लू ग्रे दिखाई दे रहा हे। यहाँ --

यहाँ पर आसमान का कलर ब्लू पर्पल व्हाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है जिनका कलर ब्लैक ग्रीन दिखाई दे रहा।

यहां पर आसमान का कलर ब्लू व्हाइट ओ पर्पल दिखाई दे रहा है यहां पर कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है जिनका कलर ग्रे ग्रीन दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ बिल्डिंगस दिखाई दे रही हैं जिनकी दीवारों का कलर ब्लू वाइट दिखाई दे रहा है।

कुछ लाइट दिखाई दे रहीं हैं कुछ पेड़ मालाऐं दिखाई दे रहीं हैं।

पर एक हॉल दिखाई दे रहा है। जिसकी दीवारों का कलर रेड दिखाई दे रहा है और कई सारी लाइट दिखाई दे रही हैं।

आसमान का कलर वाइट दिखाई दे रहा है और कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहें हैं जिनका कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है।

पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जिनकी दीवारों का कलर ग्रीन ग्रे येलो ऑरेंज दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर के टॉवर दिखाई दे रहे है।